हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं | यहाँ पर जंगली जानवर भी पाए जाते हैं | कुछ लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं | कुछ लोग कैम्पिंग करने के लिए भी आते हैं।